ये एक होटल है जिसका नाम है होटल अर्णव और ये पिंक कलर से पेंट की गई।

कलर वगेरा नही है यहाँ उच्च मध्य मुख्य विद्यालय पंचायत बेलाडी है।

जो लकड़ी कलर का जो रहता है उस तरह से है और यहाँ पे तीन चार आदमी खड़ा है पंखा भी लगा हुआ है ए.सी. भी लगी हुई है इसमें ये काफी हाई-फाई जिम है।